हमें यहाँ पर एक फोर व्हीलर देखने को मिल रहा है साइड में बहुत सारे --

नीचे में बहोत सारे तार देखने को मिल रहा है इधर इधर पानी टंकी देखने को मिल रहा है।

उधर सरसों तेल रखा हुआ है इधर बिस्किट के लगे हुए हैंइधर मूव रखा हुआ --

हमे यहां पे बहोत सारे कुर्सी देखने को मिल रहा है जिसके उपर कपरा से उसे झापा गया है।

हमें इस दोकान में हार्पिक नजर आ रहा है वहीं पे साइड में एक तार नजर आ रहा है।

हमें यहाँ पर एक धर देखने को मिल रहा है जिसके बाहर में सीढ़ी है उसके पीछे में बहुत सारे तार से पेड़ है।

उधर एक साइकल देखने मिल रहा है पीछे में बांस का पेड़ देखने --

सब मिल रहा है आस पास बहोत सारे लोग है इस प्लेग्राउंड --

साइड में एक मिरर देखने को मिल रहा है वहीं पे ये पानी गर्म करने वाला देखने को मिल रहा है।

यह एक लिफ्ट के अंदर का फोटो है जहां पे प्रॉपर में व्हाइट कलर का लाइट लगा--

वहीं पे एक बैठने वाला बना हुआ है जिस पर एक औरत बैठी हुई है एक बच्चा बैठा हुआ है और एक --

हमें यहां पे ये पार्टी हॉल के अंदर डेकोरेशन में एक छाता देखने को मिल रहा है।

यह एक कमरे का पिक्चर है। होटल का जहां पर आसपास में बहोत सारे बैलून लगे हुए--

एल_ई_डी बल्ब देखने को मिल रहा है साइड में एक लोटा देखने को मिल रहा है वहीं पे एक भुजिया देखने को मिल रहा --

यह एक दूतान से बाहर का दृश्य है जहाँ पे बहुत सारे ताजरिया से टाइल्स लगे हुए हैं।

यह एक मंदिर ता फोटो है जहाँ पे यह एक बुद्धा जी ता मंदिर ता फोटो है जहाँ पे --